बहुत सारे लोग चल रहे हैं कोई रुके हुए हैं। गाड़ी भी लगा हुआ है रेड काले कलर का गाड़ी है ब्लू कलर का गाड़ी है। एक गुमटी भी है |

सब लोग पार्क में यहाँ पर सब लोग पार्क में एल.सी.डी. देख रहे हैं जो की उसमें तस्वीर दिख रहा है व्हाइट कलर का नजर आ रहा है एल.सी.डी. और वो तो जो की दीवार में लगा है।